जिसके बहुत भीड़ हो जाते है इसके बाहर दो बड़े-बड़े पेड़ लगे हुए हैं जो बहुत ही हरे भरे और खूबसूरत है।

पेड़ पौधे बोहोत ही बड़े-बड़े हैं सारे पेड़ पौधे इतने हरे हैं जो कि बोहोत ही ज्यादा खूबसूरत लग रहे हैं यह नजारा बहुत ही खूबसूरत --

यह समुद्र बहुत ही गहरा समुद्र हैं इस पुल पर हम खड़े हो कर दूर हरे भरे पेड़ पौधे का मजा ले सकते हैं इस समुद्र मे मगरमच्छ होने का भी खतरा है |